बहुत ही बढ़िया सा फूल एवं डेकोरेशन किया है जिस पर एक बाबा बैठे हुए हैं जो भ्रमण कर रहें हैं। इनका दर्शन करने के लिए लोग आसपास के मोहल्ले के लोग इकठ्ठा हुए हैं। इस भीड़ को संभालने के लिए पुलिस भी आई हुई है।